दो बच्चे बैठे हुए हैं एक ने लाल रंग की टी शर्ट और दूसरे ने सफेद रंग की टी शर्ट पहन रखी है।

दुकान के ऊपर एक स्टील गोल्ड नाम का बैनर लगा है इस पर सरिये छपे हुए हैं।

एक आदमी बैठा हुआ है।

एक गाड़ी खड़ी हुई है।

आसमान साफ है हल्के हल्के बादल हैं।

टेंट लगा हुआ है कुछ कुर्सियां पड़ी है जो काले रंग की हैं।

पीछे एक घर है जिस पर पीला रंग हुआ है।

टेंट के अंदर मैट बिछा हुआ है।

यहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है एक सूटकेस रखा है।

उसकी साइड में बहुत सारे लैपटॉप के चार्जर और एक ड्रोन रखा हुआ है।

यहां पर एक काउंटर है जिस पर बहुत सारी प्रेस रखी हुई हैं।

साइड में एक पेंटिंग लगी हुई है।

एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ है।

साइड में कुछ कट्टे रखे हुए हैं जिनमें कुछ सामान है।

साइड में एक खंभे पर बैनर लगा है जिस पर एक जिम आदमी छपा हुआ है।

साईड में एक दूसरी गाड़ी खड़ी है दूसरी तरफ एक मोटरसाइकल खड़ी है उसके पास एक सफेद टी शर्ट पहन कर लड़का खड़ा है।